स्टेज पर येलो कलर के फ्लॉवर्स लगे हैं।

दिखाई गई हे बिल्डिंग के अंदर चार आने-जाने के लिए बहुत ही सुन्दर रास्ता दिखाया गया --

जिसमे बच्चो के लिए अं पेरोट --

नट स्क्रूप दिखाए गए हैं बड़े-बड़े स्क्रूप हैं ये|

मंदिर खम्भों वाला खम्भों की सहायता से बना हुआ है |

मेडिकल मे चारो तरफ सेल पर टेबलेट्स --

जिसमे एक गैरेज टाइप का बीच में एक गड्डा है | बाहर एक ब्लैक कलर का --